जीसके अंदर ग्रीन कलर की बड़ी बड़ी घासें हैं नारियल है फ्रूट्स है बहुत सारा सामान है।

सामने बड़ा सा एक स्विमिंग पूल है।

छतो पर छोटे-छोटे बॉक्स लटक रहे हैं उन पर तार लगे हैं।

एक आदमी लकड़ी का डंडा लिए उसमें कैंडी लगी है।

कुछ डिजाइने बनी है येलो और ब्लू कलर में।

ये एक बड़ा सा वेडिंग हॉल है जिसकी जमीने एक कच्ची मिट्टी की है।

ऊपर ग्रीन कलर के पेड़ लगे हैं छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं।

जिसमें बहुत सारे घने पेड़ लगे हुए हैं ग्रीन कलर के।

छतो पर सफेद कलर का पेंट हुआ है और लाइन से--

इसमें सामने डेस्क बने हुए हैं लकड़ियों के।

इसके अंदर बहोत सारे किताबें लगी हुई है।

सामने वहाँ छोटी छोटी किताबें लटकी हुई हैं बैनर लटके हैं।

और ऊपर वाल बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर शुक्ला बुक डिपो लिखा हुआ है।

लोहे का लंबा सा खंभा लगा है उस पर बैनर लटके हुए हैं।

रोड के किनारे कार खड़ी है एक सफेद कलर की।

सामने व शीशे का बड़ा सा काउंटर है।

सामने वॉल लोहे की रेलिंग लगी है लंबी सी जिसके कौने है साइड जमीन पर ग्रीन कलर की घास उगी है।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

लोहे के खंबे लगे हैं उन पर बहोत सारे तार लटक रहे हैं।

खंभों के ऊपर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं उनमें चित्र हैं बहुत सारे।

यह एक बड़ा सा पार्क है जिसकी जमीने कच्ची मिट्टी की हैं उन पर ग्रीन कलर की घास उगी हुई है।

इसमें लंबा सा एक ब्रिज बना हुआ है।

दूसरे साइड जमीनें कच्ची हैं मिट्टी की उन पर ग्रीन कलर की घास उगी है।

और ऊपर वल बड़े बड़े डिब्बे लगे हैं चॉकलेट्स के।

ये एक बड़ा सा हॉस्पिटल है जिसके जमीनों पर टाइल्स बिछे हुए हैं।

बहुत सारे डस्टबिन रखे हुए हैं उसके अंदर पन्नी के लगी है।

तो ऊपर चौकोर लाइटें लगी हैं लाइन से।

गले में हार है जो की येलो कलर के फूल से बना है।

यहां बड़ी सी रोड है सामने वाल ट्रांसफार्मर है जिसके ऊपर तार लटक रहे हैं।

बगल की दीवारों पर टाइल्स बिछे हुए हैं।

उन पर फूल लगे हुए हैं गुलाबी और ब्लू कलर में और एक अ बच्चा खड़ा हुआ है टी शर्ट और पैंट पहने--

सामने वाल बड़ी सी लंबी रोड है जिस पर बहोत सारी गाड़ियां हैं बाइक टैक्सी बस कार और बहोत सारे लोग मौजूद हैं।

उसके ऊपर बड़े बड़े बत्थर रखे हुए हैं जो कि डिजाइन दार है।